बहोत सारी बैट रखी हुई है नो स्टॉप करके लिखा है किसी में डबल एस करके लिखा है व्हाइट कलर की बॉ --

दो तीन गेट है पांच छे खिड़कियां है पेड़ है आसमान है तार है।